जहाँ पे तीन औरत और एक महिलाएं जाते हुए नजर आ रहे।

इस चित्र में ट्रैफिक दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में एक टोटो वाला दिखाई दे रहा है।